नदी के आसपास-म जंगल है छोटा छोटा हरा भरा जंगल है और फूल के बगल मे एक दो बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

ये एक बोहोत बड़ा चारो पटी सा बिल्डिंग है बिल्डिंग वाइट कलर का है वाइ-उसके आगे एक--

एह एक रास्ता है रास्ते के बगल में ढेर सारी जंगल हैं।

यह एक बगीचा है| बगीचे के अंदर कुछ बकरियाँ बैठी हुई हैं।

सामने एक कार लगी हुई है।

यहाँ पर सौर्य ऊर्जा लगी हुई है| एक व्यक्ति बाइक से आ रहा है दो व्यक्ति पैदल जा रहा है।

और एक पोल नजर आ रहा है जिस पे कुछ एक बोर्ड टंगा हुआ है चारों और पेड़ --

तारे दिख रहे हैं कुछ बिल्डिंग दिख रहे हैं।

आगे कुछ ज्वेलरी और जनरल स्टोर दिख रहा है| बगल मे मंदिर है।

बगल मे ए एक घर दिखाई दे रहा है उसके बगल मे एक पेड-पौधे दिखाई दे रहे हैं।